यहाँ एक चर्च है चर्च में बहुत सारी लड़की आई हुई हैं यहाँ पे चर्च में इसाई धर्म के लोग अधिकतर ज्यादा आते हैं।

यहाँ पे बहुत लोग योगा करने के लिए आते है | योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ।

यह एक कॉफी की शॉप है। यहाँ पे कॉफी पीने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे न --

यह एक कॉलेज है। यह कॉलेज के बाहर बहुत सारे हरे-भरे मैदान हैं। यह मैदान में काफी सारे पेड़ लगाए गये हैं। बहुत सारे घास इस मैदान में हैं।